आगे झंडे लगे हुए है आगे रंग बिरंगे पर्दे है बिल्डिंग है पीछे पेड़ है।

और सर परेड करवा रहे हैं और भारत माता का झंडा है।

और सारीज करके शॉप है यहां पे साइड में एक मस्जिद जैसा है।

यह एक गार्डन है जहां पे आगे एक व्हाइट शर्ट और ब्लू पेंट में बच्चा खड़ा है जो की बहुत सुंदर और क्यूट है।

जहां पे एंट्रीस पे टेबल है जहां पे बोर्ड मारा हुआ है वेटीएम जर्नल आफ शिपिंग का महानगरपालिका का है साइड में भी एक बोर्ड है।

बहोत सुन्दर एक गवर्नमेंट आफिस दिख रही है और साइड में पौधा है फर्नीचर वाला टाइल्स है और ऊपर ट पी_ओ_पी है कैमरा लगा हुआ है।

आगे एक आदमी खड़ा है जोकि मार्क्स पहने हैं।